यहाँ सूरज डूबता हुआ दिखाया गया है यहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे वह घर दिखाई दे रही है यहाँ घना--

यहाँ कुछ बालिकाएं नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है एक महिला बैठी हुई है तो एक महिला नृत्य सीखा रही है सामने की दीवार पर शीशा लगा हुआ है।

खड़ी हुई दिखाई दे रही है वह यहाँ एक खंभा लगा हुआ है जिस पर बल्ब लगा हुआ है यहाँ सड़क पर कुछ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक लकड़ी की मेज पर काले रंग की प्लेट में तीन कटोरियाँ रखी हुईं हैं दो कटोरियों में चम्मचे भी रखी हुईं --

यहाँ एक लोहे की कढ़ाई में कुछ व्यक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति बैठा है तो दो व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहें हैं यहाँ--

यहाँ एक होल दिखाया गया है यहाँ सफेद रंग की सोफे बिछे हुए दिखाई दे रहें हैं वे छत पर सफेद रंग की लाइटें लगी हुई दिखाई गईं हैं।